जहां सफेद रंग के पट्टो से चार दिवारी करी गई है।

और यहां कई खिड़कियां भी दिख रही है यहां पर बहोत सुंदर जगह --

और बहुत ही सुंदर यह जगह है। यहां एक कुर्सी भी रखी हुई है।

ये तस्वीर बहोत सारे स्टूडेंट की है।

बहुत बड़ी कॉलेज की बिल्डिंग है।

दिख रहा है और दो बड़े पेड भी --

यह तस्वीर एक सड़क की है।

करी गई है यहां पर बहोत--

यहां कुछ झंडे भी लगे हुए है और यहां पर--

ये तस्वीर एक बड़े हॉस्पिटल की--

ये तस्वीर एक बहुत बड़ी पार्किंग की है यहां बहुत सारी कारें --

यह तस्वीर बहुत सारे लोगों की है यहां पर अनार बम छुटाए जा रहे हैं।

और बोहोत सारी हरियाली दिखाई दे रही--

कॉलेज की है यहां पर बहोत बड़ा नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है।

ये तस्वीर एक जिम की है इसमें बड़ी बड़ी मशीने --

भरा हुआ है यहां कुछ लोग भी दिख रहे हैं और उनका सामान भी।

पास में एक पेड़ भी दिख रहा है और यह बहुत सी--